सफ़ेद लकड़ी लगी हुई है ऊपर बादल दिख रहे हैं और कुछ कार दिखाई दे रहे--

रंग-बिरंगे गुब्बारे लगे हुए है और साइड में बहोत सारे नीले कलर गेट लगे हुए है और--

लगे हुए है ऊपर आसमान आधा ब्लैक आधा सफ़ेद दिख रहा है और निचे बहोत से पेड़े--

और सोफा सेट रखा है जो सफ़ेद कलर और उसके किनारों पे कत्थाई कलर जिसपे गोल्डन फूल बने हुए है और पीछे बड़ा- सा --

साइकिल है नीली स्कूटी दिख रही है साइड में एक पीछे ऑटो दिख रहा है।